यहाँ पर एक मंच है यहाँ चउदा लड़कियाँ है और एक लड़का झंडा लिए खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक चौराहा दिखाई दे रहा है। बोहत बड़ी बिल्डिंग है। साइड बस स्टैंड हैं। बोहत--

यहाँ पर पांच लोग दिखाई दे रहे है बाल्टी दिखाई दे रही है बहुत सारी मछलियां भी दिखाई दे रही है।

लाइटे भी लगी हुई है गेंदे की फूलो से तैयारियाँ भी है पीछे पेड़ भी है और बस --

पंखे भी लगी हुई हैं लाइट भी लगे हुए हैं शीशे भी लगे हुए हैं चेयर्स भी डले हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है ऊपर जाली लगी हुई है ऊपर थोड़ी बाउंड्री भी है और छय्या भी निक--

और पीछे की तरफ बहुत सारे डंडे-डंडे से दिखाई दे रहे है।

वहाँ पानी दिखाई दे रहा है दो बॉइज खड़े हुए है एक चश्मा लगाए एक गाल पे हाथ रखे--

यहाँ पर रात का समय हुआ हैशायद रात है और लाइटे भी दिखाई दे रही है पीछे जिम की मशीनें भी है।

यहाँ पर दो बॉयज खड़े हुए हैं और कांच का गेट लगा हुआ है और ब-बिल्डिंग शायद बैंक है।